यह एक स्कूल है जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे है इनके सामने कुछ सामान भी रखा हुआ है जिसके अंदर एक महिला भी खड़ी है।

पीछे दीवार पर एक बिजली का तार भी है।

यह एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है यहां पर कुछ कारें भी खड़ी हुई हैं।

यह एक दुकान है जिसके अंदर दो लैपटॉप रखे हुए हैं।

और दीवारों पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और इस नाव में कुछ सामान भी हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमें छोटे छोटे बॉक्स हैं।

इसके बाहर एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

और इसके बाहर कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

और यहां पर एक झरना भी चल रहा है जिसके पास से एक नदी गुजर रही है।

यह एक मंदिर है जिसके बाहर एक लड़का और कुछ दो छोटी बच्ची और कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं।

इस घर के पीछे एक बड़ा पेड़ भी है।

और छत में कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

स्कूल के ऊपर स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है।

और बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और कुछ लकड़ियां भी लगी हुई है।

आउर तालाब में पानी भी भरा हुआ है।

यह एक मंदिर है जिसके अंदर एक आदमी भी है जिसमें कुछ मूर्तियां भी रखी हुई है।

उसकी दीवार पर खुद पर्दे लगे हुए हैं और बहुत सा सामान रखा हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमें लकड़ी के बॉक्स बने हुए है।

इस पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह एक दुकान है इस दुकान के अंदर कुछ मूर्तियां भी रखी हुई है जिसके पास में एक थाली भी रखी हुई है।